एक ब्लैक बोर्ड है बहोत सारे बच्चे हैं वाइट कलर का दीवाल है।

शोरूम है बहोत सारा यहाँ स्कूटी लगा हुआ है लाल है पीला है ब्लैक है वाइट है।

ये एक ट्रेन है।

ये एक रोड है यहाँ बहोत सारा गाड़ी चल रहा है वाइट कलर का भी है टेम्पू है स्कूटी है पुल बंधा हुआ है।

एक एक आदमी पॉकेट में हाथ लगाए हैं एक आदमी झोला टांगे हुए हैं ।

नी मोजा पहेनी है नीचे हरा-हरा कलर का पहाड़ है।

मैम लोग तीन-चार मैम हैं मैम लोग खा रहीं है।

एक लेडीज यहाँ पे बैठी है । नैपकिन भी रखा हुआ है । बगल में थम्स-अप भी रखा है ।

बगल में पेड़ है हरा कलर का नीचे पीला कलर का प पेड़ है घास हैं।